एक रेल का पटरी दिखाई दे रहा जो काले रंग का है।

ट्रेन के बड़े बड़े चक्के और पटरी और कुछ गिट्टी दिखाई दे रहे--

लड़की जो खड़ी है जो सफेद रंग का फ्रॉक पहने सर में टोपी ली और--